ऊपर की साइड लाइटे भी लगी हुई है। साइड में विंडोज़ भी है आगे की साइड कोई रास्ता भी जा रहा है राइट साइड में --

जैसा की हम देख रहे हैं सभी लोग यहाँ खाना खा रहे हैं कुछ सभी के सभी लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं| पीछे की साइड लाइट भी लगी हुई है | सभी लोगों के हाथों में प्लेट्स भी है |

अंकल भी लगे हुए है साइड में बैठे हुए हैं व्हाइट शर्ट में और ये भी खाने का काफी आनंद उठा रहें है | साइड में एक लेडी है उसके बाल --

बैग के पीछे ही एक शॉप है जो किसी चीज़ खाने पीने की श --

जो की किसी लड़के से बात कर रहा है | सामने की साइड पेड़ भी है | एक खंभा जा रहा है जिसमें काफी सारी लाइट है ।

जैसे कि हम देख रहे हैं सामने एक बैंकट हॉल है। शादी का काफी डेकोरेशन की हुई है। ब्लू और व्हाइट कलर के पर्दे से और येलो कलर इन्होंने लाइट से डेकोरेशन किया हुआ है।

तबले वाले के बराबर में ही एक पियानो बजा रहा है जोकि काफी अच्छा दिख रहा है और साइड में ही एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि कुर्ते सफेद कुर्ते पाजामे में --